ये एक बस स्टैन्ड है जहाँ पर दो बसे खड़ी हुई है एक अंकल है जो बस के बाहर खड़े हुए है और एक अंकल है जो बस के अंदर चढ़ रहे है उन्होंने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी है बैग ब्लैक कलर का टंगे हुए है और हाथ में एक थैला है।

रेलवे लाइन के पास में थोड़ी सी घास है जहाँ पर गाय घास चर रही है और रेलवे लाइन पर एक मालगाड़ी है उसके साइड वाले पट्टी पर बहोत सारे घर नजर आ रहे हैं जो कि पक्के हैं।